और उसने सूंड ऊपर किया हुवा है।

सामने एक दीवार है जिसपर पर्पल कलर का पर्दा लगा हुआ है जिस पर बी.डब्लू. वर्ल्ड स्कूल लिखा हुआ है।

एक मिठाई की दुकान है जिसके काउंटर पर तराजू रखी हुई है एक डब्बा रखा हुआ है काफी सारे ब्रेड्स के पैकेट रखे हुए है।